मुझे यहां पर बहुत सारी नमकीन दिखाई दे रही है।

मुझे इस मॉनिटर में बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

मुझे यहां पर एक सफेद रंग की बस दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे खुला मैदान दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे एक अंकल कॉफी पीते हुए दिखाई दे रहे--

यह दुकान पीले रंग की है। यहां पर मुझे एक पोस्ट दिखाई दे रहा है।